ऊपर में करकट लगा हुआ है दीवार को रंग बिरंगा पेंट किया गया हुआ है।

इसके बगल में कुछ दुपट्टाआए रखी हुई हैं नीचे में मार्बल लगा हुआ है।

बगल में एक सफेद रंग का सफ़ शर्ट पहना हुआ आदमी खड़ा है।

एक पंडित जी है उनके बगल में कुछ सामग्री रखी गई है।

साइड में एक कार है और उसके पीछे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए।

इसके बगल में एक मॉल है जिसके ऊपर दो लाइट जल रहा है।

एक व्यक्ति नीले रंग और दूसरा व्यक्ति लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

इसके आगे एक काला रंग का गाड़ी लगा हुआ है उसके बगल में दो स्कूटी है।

और उसके नीचे चौक सराय रोड गया लिखा हुआ है ।

यह तस्वीर में दो सफेद रंग की गाड़िया दिख रही हैं।

पीछे एक घर है जो की पीले रंग से पेंट किया गया है।

वहां पे खिड़कियां दी गई हैं बगल में कुछ बच्चे खड़े होकर बात कर रहे हैं।

में बहुत सारा लाल कलर का फूल लगा हुआ है।

सामने एक पीला रंग का पोल है और उसके बगल में काला रंग का पोल है।

पीछे में नीले रंग का एक टंकी रखा हुआ है।